शोरूम जैसा लग रहा है जिसमें गाड़ी धुलने आई है उसमें टेंट हाउस ए उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं पांच छे गाड़ी खड़ी हुई है उसमें लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और इसमें इसका कलर का पेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है पीछे बहुत हरियाली है देखने में बहुत--

यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं देखने में बहुत अच्छी बुक स्टेशनरी दुकान देख के ये यहाँ पर एक ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है पंखा दिखाई दे रहा है और एक भगवान जी की मंदिर दिखाई दे रहा --

ये सामने हमको पेड़ दिखाई दे रहा है दो लड़के खड़े हुए है ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है ये इस इमेज में हमें जंगल दिखाई दे रहा है जंगल जैसा लग रहा है।